एक आदमी यहां पे वाकआउट कर रहा है।

यहां पे सफेद रंग की कुर्सियां लगा दी गई हैं डेढ़ सौ कुर्सियां होंगे।

यहां ऊपर में कुछ पूजा प पाठ वगैरा चल रहा हैं और स्टेज काफी जगमगा रहा--

यह एक गार्डन की तस्वीर दिख रही है सामने दो चेयर रखे हुए हैं जो सिल्वर कलर के--

वो रुखि जैसी लग रहीं है पानी वगैरा बहोत दिन से नहीं डला हुआ है।

और अभी धूप का समय हैं तो बहोत धूप दिख रहें हैं आसपास जो हैं काफी मुरझाए हुए पेड़ पौधे भीं नजर आ रहें हैं दोपहर का टाइम --

यह एक ज्वेलरी शोरूम नजर आ रहा है सामने बहोत सारे जो शोकेस में हार वगैरह रखी है नेकलेस सेट है।

हर कलर में यहां पे दिख रहा है रेड है हल्का सा ऑरेंज है ग्रीन जैसा दिख रहा है।

चट्टानों से निकली हुई झरना काफी इसका पानी हो हैं साफ दिख रहा है और--

बहुत खूबसूरत लग रहा है सामने जो है ढलता हुआ शाम है ये।

और रोड पूरी तरह से खाली है कुछ बैंक वगैरे जो है सामने हमें दिखाई दे रहे--

यह एक फ्लैट जो है अपार्टमेंट है उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो शोरूम वगैरा पिक दिख रहा हैं यहां पे कपड़ों का जूताें का --